और बहुत सारा किसम किसम का मशीन सब भी दिखाई दे रहा है।

और फ्लोर भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे बरफ भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा गाड़ी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बरा सा पहार दिखाई दे रहा है।

और मुझे एक गारी भी दिखाई दे रहा हैं।

इंसान लोग भी दिखाई दे रहा है और फैन भी दिखाई दे रहा है।

जोकि वाइट कलर का है और बहुत सारे इंसान लोग भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में मुझे कार्टून सब भी दिखाई दे रहा है।

साइड मुझे एयरफोन भी दिख रहा है।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

मुझे पीछे में मुझे दीवार भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में मुझे दिख रहा है।

पीछे में बड़ा बड़ा पेड़ सब भी दिखाई दे रहा--

बजाने के लिए मुझे डेक भी दिखाई दे रहा है।